एक यहाँ गिरजा घर लग रहा है। इस गिरजा घर मे बहुत अच्छी डेकरेशन की गई --

और ये वो डेकुराशन है और हल्की नीली ग्रीन कलर कि दिखाई पड़ रही है। इसके गेट है वो भी कलर नुमा दिखाई पड रही है अच्छे-अच्छे।

और पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है एक कुर्सी पड़ी हुई है पीछे जो पोस्टर है वो सफेद और हल्के लाल कलर का ऐसा बलून भी लगे हुए हैं ग्रीन और सफेद कलर के --

जो नीचे टाइल्स वो बिछी हुई है मैटी बिछे हुए बहुत अच्छी कलरफुल डिजाइनदार बिछी हुई है पड़ा हुआ लाइटे सूट बहोत अच्छा पहना हुआ है।

इसके आगे जो ग्राउंड बना है वो सुन्दर लग रहा है हरे कलर की घास जैसी लगा है इसमें लाइट आईट बहुत अच्छी एक दम डेकोरेशन की गयी हैं कुछ खजूर के पेड़ भी दिखाई पड़ रहे है।

चंद्र शेखार आजाद की भारत माता की भी लगी पृथ्वी का ग्लोव दिखाया गेट --

विसर्जन करने के लिया जा रही हैं और यहाँ उधड़े मकान-वकान दिखाई पड़ रहे हैं। इस मकान के ऊपर --

और एक थोड़े यूकेलिप्टस के पेड़ नज़र आ रहे हैं।